यह एक दुकान नजर आ रही है जहां पर कुछ --

यह एक नाई की दुकान नजर आ रही है यहां पर एक बच्चा खड़ा नजर आ रहा --

बच्चा अपनी कटिंग करवा चुका है यहां पर दृश्य अच्छा लग रहा --

यह एक खाली मैदान नजर आ रहा है जिसके चारों तरफ पहाड़ नजर आ रही--

यह एक बहुत ही अच्छी शॉप नजर आ रही--

इस शॉप का नाम समीर ऑटो रिपेयरिंग सेंटर नजर आ रहा --

एक ईसा मसी का मंदिर नजर आ रहा--

अध्ययन सामग्री की नजर आ रही है।